अंकल आंटी भी नजर आ रहे हैं।

ईंटों का घर भी नजर आ रहा है।

एक पेड़ से भी गेट बनाया गया है जो की--

बहुत अच्छा देखने में लग रहा है और इसके ईद-गिर्द में पेड़ नजर आ रहे हैं।

और नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है।

घास लगी हुई है और पीछे काफी घना जंगल नजर आ रहा है।

और नीचे एक नदी भी दिख रही है।

कुछ लोग आपस में खड़े हो के बातें कर रहे हैं और कुछ ऐसे ही टहल रहे हैं।

कम्पलीट फिनिश सैलून नजर आ रहा है सामने--

जहां पर एच_आर_टी_सी की बसेज लगी है।

शाप में बोर्ड में लिखा गया है चिल्ड्रेन बुक --

जो कि सारे ही वर्कआउट कर रहे हैं और यहां पर ये जिम का नजारा देखने को मिल रहा है।

इसमें की डंबल्स वगैरा रखे गए हैं और लोग अपना वर्कआउट कर रहे हैं।

बहुत ज्यादा मात्रा में और रंग बिरंगे और अलग अलग ब्रांड के रखे गए हैं।

कमीज देख सकते हैं और इसके अंदर लोग भी खड़े हैं।

और ये काफी अच्छे से रखे गए हैं।

यहां पर हम बिल्डिंग्स देख रहे हैं जिसमें हमें--

जैसे भुट्टा होते है बिल्कुल डिट्टो वैसा ही न--